सारा कुछ है पार्क जैसा है वहाँ पे मतलब खेल-कूद भी बच्चा लोग कर सकते हैं इसलिए करके वो ऐसा बना हुआ है।